ये जिम अन बहुत बड़ा है अपने शरीर को व्यायाम और फिट रखने के लिए आते हैं हर एक व्यायाम के लिए हर कार्य के लिए अलग-अलग मशीन उपलब्ध है यहां बहुत से लोग व्यायाम कर रहे है नीचे लेट के व्यायाम करने के लिए मेट भी बिछाया गया है ।

और यह होटल बहुत ही साफ सुथरा और हाइजानिक तरीके से यहां पर ब्रेकफास्ट वगैरह रसगुल्ला वगैरा भी बनाए जाते है जो बहुत ही स्वादिष्ट होते है।